बगल में कुछ सामान भी रखे हुये है।

एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे एक मूर्ति खड़ी हुई है मूर्ति के ऊपर अ दो पिलर लगे हुएं है और छत भी पड़ा हुआ है बगल में एक--

और सामने एक गोला आकर का अ बना हुआ है जिसमें एक खम्बा टाइप का खड़ा हुआ है।

और भवन में अ जो पेंट किया हुआ है वो गुलाबी कलर से किया हुआ है।

ग्राउंड में एक भवन बना हुआ है। वहा पे छोटे-छोटे खम्बे भी लगे हुए है।

और कार का हमको कांच भी दिख रहा है जो की कार का सीसा जो है सफ़ेद है।

हमें सामने यहाँ पर दो दरवाजे दिख रहे है दरवाजे पे पोस्टर चिपके हुए है जिसमे से एक लड़की एक लड़का दिख रहे है।

और सफ़ेद कलर गुलाबी कलर काले कलर का--

और काले कलर का यहाँ पे मिटटी रखा हुआ है। सामने खम्भे दिख रहे है सफ़ेद कलर का और--

हमें यहाँ पर हरा कलर का ग्राउंड दिख रहा है जिसमे दो बदख बैठे हुए है।